और इस मॉडल के बीच में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स है और बीच में रोड्स बनाए गए है।

के बाह में कुछ लोग बैठे हुए हैं अपनी चिट्ठीयां डालने के लिए।

अलग-अलग बीमारियों के बैनर्स लगे हुए हैं।